देखिए एक खेल का मैदान है इसमें पच्चीस तीस लड़के खड़े हैं बेग भी रखा हुआ है।

देखिये ये किसी चीज का दुकान है चार मंजिल तीन मंजिल बिल्डिंग है बाउंड्री भी है बाहर भी कुछ नजर आ रहा हैा

और घर के अ बाउंड्री के बगल में बिल्डिंग भी है पेड़-पौधे भी हैं एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है इधर साइड मे।

देखिये ये नदी है नदी के ऊपर आसमान में बादल छाए हुए हैं इधर साइड में हरे भरे जन जंगल नजर आ रहे है इधर पेड़ पौधे हैं देखने में इधर साइड में अच्छा लग रहा है।

रोड भी है एक व्यक्ति झोला लेकर इधर जा रहा है व्हाइट शर्ट पहने हुआ है काला पेंट लाइट भी लगा हुआ है पेड़ पौधे भी हैं | आसमान भी क्लीन --

देखिए यहाँ पे सब्जियाँ रखी हुई है नींबू भी है धनिया का पत्ता भी है परवल भी है केला भी है टमेटो भी है गजरा भी है।

ये देखिए कितना ही अच्छा रोड है सामने एक बाइक लगा हुआ है और साइड में अच् हरा भरा जंगल भी है।

ये देखिये ये दुकान है यहां अंडा रखा हुआ है और इधर देखिये ये तराज़ू रखी हुई है

और नीचे यह देखिए उजला उजला नज़र आ रहा है।

और इधर प्लेटफार्म है इधर बैठने वाला सीट है और दाहिने साइड में देखिए--

और ये देखिए बोर्ड भी कुछ चीज का इधर सामने नजर आ रहा है और इधर भी एक बोर्ड है | पेर पौधे भी है अगल बगल।